इसमें एक मूर्ति भी रखी हुई है ऊपर इसमें पेड़-पौधे लगे हुए है यहाँ पर रेलिंग भी लगी हुई है।

यहाँ पर कुछ महिला खड़ी हुई है यहाँ पर कुछ दुकान लगी हुई है।